इस छवि में दिखाया गया दृश्य जो कि शहरी क्षेत्र का--

जहां पर लोग खड़े हुए है तथा अपने अपने बैग अपने पास ले रखे है।

कुछ लोगों ने साइड में तथा कुछ लोगों ने कंधे पर डाल रखा है बैग ।

तथा सामने शीशा लगे हुए हैं और सामान रखा हुआ है काउंटर पर।

इस तस्वीर में दिखाया गया दृश्य जो कि किसी पेट्रोल पंप का है।

और डाला खड़ा हुआ है आस पास कार खड़ी हुई है।

इस तस्वीर में दिखाया गया दृश्य जो की किसी रेलवे स्टेशन का है।

और सरिया पड़ी हुई है जो की जाल से बंधी हुई है।

बिजली के लिए पाइप्स पड़ी हुई हैं जिनपे अंदर अंदर तार जा--

इस तस्वीर में दिखाया गया दृश्य जोकि किसी समुद्र के किनारे तथा नदी के किनारे का है।

यहां पर लिखा हुआ है आटा यानी कि यह आटा पैक है तथा सामने बोर्ड लगा हुआ है।

तस्वीर में दिखाया गया दृश्य जो कि किसी मॉल का है।

इस तस्वीर में दिखाया गया दृश्य जो कि किसी जिम एकेडमी का है य--

लोगों ने अलग अलग प्रकार के कपड़े पहन रखे हैं।

इस तस्वीर में दिखाया गया दृश्य जो कि किसी दार्शनिक स्थल पर जाने का रास्ता है।

बहुत सारी कार खड़ी हुई है।

रेलवे पटरी पर बनी हुई है।

इस तस्वीर में दिखाया गया दृश्य जो कि किसी बन रहे बिल्डिंग का है।